यह एक हेल्थ एवं बैलेंस सेंटर है। यह प्राथमिक स्वास्थ केंद्र देवरी रोड आगरा के हैं।

यह मंदिर में लोगो की बोहोत ही भीड़ लगी रेहति हे।

यहाँ पे आदमी भी आता है जानवर भी पानी --

यह नाव डीज़ल से चलती है। यह नदी में बहोत ही पानी है।

आईब्रो बनवाते हैं बाल कटाते हैं थ्रेडिंग का काम सीखते हैं।

यहाँ पे झूला भी झूलते हैं। यह पार्क में बहुत ही अच्छी --

लोग यहाँ पे आइस्क्रिम खरीदने के लिए खाने के लिए आते हैं।